चारों साइड और बीच में एक पानी है पानी के चारों ओर हरी भरी--

यहां पे बिल्डिंग बन रही है न्यू और एक बंदा बैठा है वहां पे और एक चेयर पड़ी है और बहुत सारी ईटें पड़ी है और यहां पे कच्चा --

ये डी मार्ट है अंदर बहोत सारा समान पड़ा हुआ है और सामन के सामने एक चोट भी मिलती है।

और एक पानी का टैंकर पड़ा है और एक ईंटों से कुछ बनाया हुआ है और फूल भी लगे हुए हैं काफी सारे।

यहां पे बहुत बड़े कैफे है कैफे के अंदर एक बहोत अच्छी वॉच लगी हुई है और बहुत सारी लाइटे भी लगी हुई है और चेयर पड़ी है बहोत सारी।

एक बाइक खड़ी है एक एक्टिवा खड़ी है और एक कचरा का कूड़ा बहुत बड़ा पड़ा है।

यहां पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं एक मैडम सामने खड़ी है और बहुत सारे--

यहां पे बहुत सारा पानी भर रखा है और घर की नाव है इसमें और एक नाव छोटी सी साइड में भी है।

श्री जगदंबा आयुर्वेद भंडार लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ वेदनाथ के नगरालय।

गा खड़ी है बाइक और बहुत सारे टायर भी लगे हैं पीछे और आर_एस_एल चालीस जीरो लिखा हुआ है।

है ये लिखा हुआ है और दो गाड़ियां खड़ी है और एक लेडिज खड़ी है सामने --

यहां पे गाड़ियों का शोरूम है यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है और उधर एक भैया खड़े हैं बाइक पे।